यह गाड़ी सुजुकी कंपनी की है जिसका नंबर डी एल वन आर टी सी टू टू वन सिक्स है।

यह एक बहुत मंजिला इमारत है जिसके बाहर बहुत सारी वाहने लगी हुई है।

यह एक कच्ची सड़क हेै जिस पर बहुत सारी वाहनें खड़ी हुई हैं।